यहां पर बहुत सारे झंडे भी लगे हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर बहुत सारी लाइटिंग की हुई दिखाई दे रही--

यहां पर बोर्ड भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर बहुत सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही।

में एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा--